स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिविटीस भी कराए तो उनका --

दिमाग की स्थिति या मतलब दिमाग में उनके जोर नहीं पड़ता उनको रेस्ट मिलता रहता हैं।

जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन मे पेड़ पौधें अति इम्पोर्टेंस बहोत है।